क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बच्चे भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं और यह सभी अलग अलग कलर के कुर्सियों पर बैठे हैं कुछ बच्चे लाल कलर के कुर्सियों पर बैठे हैं।

यहां पर इस पानी को एक स्विमिंग पूल में दर्शाया गया और दूर की तरफ बत्तख भी बनाई गई आ रही है जो की देखने में बहोत सुंदर लग रही है।

इस इमारत के अंदर बहुत सारे रंग भरे गए है और सामने की तरफ एक सफेद रंग की कार खड़ी हुई नजर आ रही है और साइड इधर भी एक सफेद कार खड़ी हुई नजर आ रही है।

इसके सामने एक दो कारें खड़ी है एक सफेद रंग की और काले रंग की है और सामने की तरफ बहुत ऊंचे-ऊंचे पेड़ में नजर आ रहे हैं देखने में बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं।

ऐसा लग रहा है कि एक लग्जरी होटल है क्योंकि यहां पर बहोत सारे लग्जरी आइटम नजर आ रहे--

भोपू बजाते हुए नजर आ रहे है और एक आदमी नजर आ रहा है जो की हाथ में काला रंग का ठेला टांगा हुआ है।

ढाबा नजर आ रहा है डब्बे में बहोत सारे लोग खाना खाते हुए भी नजर आ रहे हैं और यहां पर दो से दिन--

बाइक पर दो आदमी बैठे हुए भी नजर आ रहे--

और इसको लाल पत्तों से पूरी जगह से ढका गया है एक काले रंग का डस्टबिन भी नजर आ रहा है।

और यहां पर दो लोग भी बैठे हुए नजर आ रहे है उस बिल्डिंग के सामने काले रंग की कार खड़ी हुई नजर आ रही है।

जिस बिल्डिंग के अंदर चद्दर लगा के एक पार्किंग की जगह बनाई गई है जहां पर कुछ कारे खड़ी हैं यहां से सिर्फ एक कार दिख रही है जो काले रंग की है।

नजर आ रहा है जिसमें पानी भरा है।